कलियारा भी दिख रही है और इसके पास में एक और गाडी खड़ी हुयी दिख रही है पास में हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे है थोड़ी दूर में कुछ बाइके भी दिख दिखाई दे रही है।

-- के अंदर पहाड़ के अंदर एक गुफा दिखाई दे रही है जिसमे एक पीले रंग पहने हुए लेडिस --

सामने एक लम्बा सा तम्बू खड़ा है जो लाल रंग का दिख रहा है और कुछ हरे-भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे है इसमे कुछ औरतों ने साड़ी और सलवार सूट पहना हुआ है और कुछ छोटा-सा बच्चा दौड़ लगाते दिख रहा है।

मशीन का रंग काला और उसके गोल रिन्ग का रंग हरा और गुलाबी दिख रहा है उसी थोड़ी दूर पर ए. सी. लगा हुआ है उसकी दीवार का रंग लाल और काला है।

--स चित्र के अंदर एक नीले कलर की बड़ी सारी नदी दिखाई दे रही है।

यहाँ की छत लाल रंग सफ़ेद रंग की बनी हुई है यहाँ बहोत सारी मशीनें रखी है जो काले सफेद रंग की है यहाँ पर नीचे फर्श भी कत्थई रंग का तथा साफ-सुथरा दिख रहा है कुछ ही दुरी पर काला रंग का सामान भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक रिक्सा पिले काले हरे रंग की दिख रही है उसके पास में कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहै है यहाँ पास में हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे है बड़ा खूबसूरत लग रहा है।

चित्र के अंदर हमे काफी लम्बा सा एक ब्रिज जो सीमेंट कंक्रीट बना हुआ नदी के ऊपर से जाता हुआ दिख रहा है जिसकी बड़ी पिल्लरे लाइन से लाइन बनी हुई दिख रही है नदी के अंदर बहुत पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

चित्र के अंदर हमें एक नाव दिखाई दे रही है जो किसी पक्षी के रूप में बनी हुई दिखाई दे रही है जिस--